एक घर दिखाई दे रहा है और मतलब ऊपर देखो तो मौसम दिखाई दे रहा है जो की ब्लू भी है और थोड़ा-थोड़ा ग्रीन जैसा भी दिखाई दे रहा है और हरियाली --

ओर दो खंबे दिखाई दे रहे हैं ओर मतलब जो म्म बस है उसका कल --

और पेड़ दिखाई दे रहे है जोके ग्रीन दिखाई दे रहा है और येह उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है व्हाइट कलर से और--

मछवारा बैठा हुआ है जो कि नीले कलर की पल्ली पर बैठा हुआ है इसके पास बहुत सारी मछलियां रखी हुई है।

यह कोई से स्कूल जैसा लग रहा है जिसमें बोहोत सारे लड़के लड़कियां बैठी हुई हैं और मतलब कोई सी येक सीट लेकर बैठी हुई है और कुछ बना रही हैं।